मसला मिलाने वाला --

और बहुत लोग बेच रहें हैं मछलियाँ।

काफी चमचमाहट नजर आ रहा है यहाँ पे पूरा लाइट वगेरह से।

भर रहा है में और यहाँ बहुत सारे ग्राहक--

और सामने एक बिल्डिंग भी है। काफी अच्छा लग रहा देखने में।

और ये महल काफी ख़ूबसूरत लग रहा देखने में --

बस में लगा हुआ रहता है।

बहुत अच्छा दुकान होता है। सब्जियों का दूकान सामने लोहे का गेट लगा हुआ है।

रखा हुआ है। काफी सुहरात खूबसूरत लग रहा है देखने में।

काफी मस्त लगता है चलाने में इसके बगल --

एक दूकान बनाया जा रहा है जो आज उद्धघाटन --

देखने का म नजारा कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पे --

साल के नए-नए कैलेंडर मिलता है। यहाँ --

और शीशा होता है अपने फेस देखने के लिए।

ये माप रहा है। बहुत व्यक्ति है यहाँ पे अगल --